ऊपर पीला पीला छत दिखाई दे रहा है। उसमें ब्लैक ब्लैक --

सामने बहोत सारे लोग भी हैं। नीचे नेट बिछी हुई है ग्रीन -ग्रीन ।